इस तस्वीर में हमें अ बोहोत सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे है। कुछ पुरुष और कुछ महिलाएँ। कुछ व्यक्ति खड़े है कुछ व्यक्ति बैठे है कुछ व्यक्ति अपने केबिन में बैठे हुए है। केबिन का कलर --

जिस जिसमें पानी बहोत ही सुंदर दिखाई दे रहा है उस पर ऊपर बादलों का अस अक्ष पड़ रहा है जिससे पानी कुछ कहीं सफ़ेद और कहीं --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

सामने ब सामने एक बिल्डिंग बनी हुई है जो लकड़ी की बनी है जिसका कलर --

सफ़ेद और ऑरेंज है ऊपर टीन सेट डला हुआ है। ब सामने बोहोत सारी बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं। बस इस स्टैंड पे बोहोत सारे --

दरवाजे के अंदर एक लोहे का गेट दिख रहा है और सामने दरवाजे के सामने बहुत सारी सी --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

अ कुछ खम्बे लगे हैं खम्बे के ऊपर फुल लगे हैं खम्बो का कलर पीला है और फूल अ कुछ लाल और हरे लगे हुए है ।